यहां पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यह फोटो प्यानो का है।

यह फोटो एक सुंदर से नए घर का हैं।

यह फोटो रेस्टोरेंट का है।

हाफ ब्लू और हॉफ व्हाइट कलर की है।

जो बहुत सुंदर लग रही है।

यह बिल्डिंग बहोंत सुंदर लग रही हैं।